बैलून का गेट बना हुआ है भूरे कलर की विंडोज है एक कार खड़ी हुई है दो लोग खड़े हुए हैं और एक बोर्ड --

इस फोटो में मुझे एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी बुक्स जमी हुई है और बहुत सारे लोग हैं।

इस फोटो मे मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की एक पहाड़ पर बैठा हुआ है और नीचे बहोत बड़ा मैदान है।

कलर और वाइट कलर की पिलो है ब्राउन कलर का कम्बल है एक लकड़ी की स्टूल रखी हुई है पर्दा है स्विच बोर्ड है।

इस फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे पिल्लो और सोफे हैं।

बहोत सारा काम कर रहे हैं पीछे गैस सिलेंडर रखा हुआ है रखा हुआ है बाल्टी रखी हुई है कुछ लोग बैठे हैं और --

इस फोटो में मुझे बहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं घास है बहुत सारे लोग हैं।

गेट का कलर भूरा है और चेयर्स दिखाई दे रही है बहोत सारी एक टेबल है पानी की दो बोटल है और एक ग्रीन कलर का --

लड़के के कपड़े व्हाइट और येलो है एक के ब्लैक और येलो तो एक के दोनों ब्लैक कपड़े।

इस फोटो में मुझे बहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं रूम है और वाइट कलर का--

जिसमें बहोत सारी टीन की दीवारें हैं ईट की दीवारें हैं बहोत सारे नीचे पेड़ पौधे हैं लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

जहां पर बहोत सारे खाने के समान है कांच के काउंटर में ए_सी लागी पंखे लगे है लाइट्स लगी हुई है बहोत सारी टेबल कुर्सी है चेयर्स है।

और एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि बाइक पे जा रहा है एक टीला दिखाई दे रहे है गेट दिखाई दे रहे है बहोत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे --

इस फोटो में एक बहुत बड़ा बिक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारी बुक्स है अलग-अलग रेक में रखी --